बहुत अच्छा यहाँ बड़ा-बड़ा --

लोग फोटो खींचा रहे है।

राशन दुकान है एकठो --

पेंट ब्रश रखा है।

पलंग बहुत डिजाइन से बना है।

हीरो हौंडा भी है यहाँ पे।